पर्ल में while और dowhile पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
पर्ल में while लूप
पर्ल में dowhile लूप
मैं उबंटु लिनक्स1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करुँगा
आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए
पर्ल में for और foreach लूप्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल में while लूप
while लूप कोड के ब्लॉक को निष्पादित करता है जबकि कंडिशन true होती है
while लूप के लिए सिंटेक्स निम्न है
while स्पेस ओपन ब्रैकेट condition क्लोज ब्रैकेट close bracket
ओपन कर्ली ब्रैकेट
कोड का भाग निष्पादित होगा जब कंडिशन true है
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
अतः क्या होता है यदि कंडिशन संतुष्ट नहीं होती है फिर while लूप कोड को निष्पादित किये बिना एक बार एग्जिट होगा
अब while लूप का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें
gedit whileloop dot pl space ampersand
और enter दबाएँ
यह gedit में whilelooppl फाइल खोलेगा
अब निम्न कोड को टाइप करें
hash exclamation mark slash u s r slash bin slash perl
enter दबाएँ
dollar i is equal to zero सेमीकॉलन
enter दबाएँ
while ओपन ब्रैकेट dollar i less than or equal to four क्लोज ब्रैकेट स्पेस
ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ और टाइप करें
print स्पेस डबल कोट value of i colon dollar i slash n क्लोज डबल कोट सेमीकॉलन
enter दबाएँ
dollar i plus plus semicolon
एंटर दबाएँ और
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
मैं while लूप को विस्तार से समझाता हूँ
हमने 0पर वेरिएबल i इनीशिलाइज किया है
अब हमने while लूप के लिए कंडिशन $i लेस देन ओर इक्वल टू 4 निर्दिष्ट किया है
यदि कंडिशन true है while लूप के अंदर का कोड निष्पादित होगा
अर्थात पहली बार हमारा while लूप टर्मिनल पर i: 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा
फिर $i++ वेरिएबल i की वैल्यू 1 से बढेगी
अब फिर से लूप कंडिशन $i<=4 का मूल्यांकन होगा
और i की वैल्यू 5 होने पर लूप एग्जिट होगा
इस केस में while लूप i इक्वल टू 0 1 2 3 4 के लिए निष्पादित होगा
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ
किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें
perl hyphen c whileloop dot pl
औऱ एंटर दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
whilelooppl syntax ok
क्योंकि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर नहीं है हम perl whileloop dot pl
को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करेंगे
और enter दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अब dowhile लूप देखते हैं
dowhile स्टेटमेंट हमेशा कम से कम एक बार कोड के भाग को निष्पदित करेगा
यह तब कंडिशन को चेक करेगा और लूप को दोहरायेगा जब तक कंडिशन true है
dowhile लूप के लिए सिंटेक्स निम्न है
do स्पेस
ओपन कर्ली ब्रैकेट
कोड का भाग निष्पादित होगा जब कंडिशन true होती है
क्लोज कर्ली ब्रैकेट फिर स्पेस
while स्पेस ब्रैकेट्स में condition औऱ फिर सेमीकॉलन
टर्मिनल खोलें और टाइप करें
gedit dowhileloop dot pl space ampersand
और फिर एंटर दबाएँ
यह gedit में dowhilelooppl फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें
hash exclamation mark slash u s r slash bin slash perl एंटर दबाएँ
dollar i equals to zero सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
do स्पेस
ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ टाइप करें
print स्पेस डबल कोट value of i colon space dollar i slash n क्लोज डबल कोट सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
dollar i plus plus सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
स्पेस while स्पेस ओपन ब्रैकेट dollar i less than or equal to four
क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
यहाँ dowhile लूप की विस्तार से व्याख्या है
हमने 0 के लिए वेरिएबल i इनीशिलाइज किया है
पहली बार dowhile लूप बिना कंडिशन चेक किये टर्मिनल पर value of i colon 0 आउटपुट प्रिंट करेगा
फिर $i++ वेरिएबल i की वैल्यू 1 से वृद्धि करेगा जब भी लूप निष्पादित होगा
दूसरी बार कंडिशन $i less than or equal to 4 चेक होगा
यदि कंडिशन true है लूप फिर से निष्पादित होगा
हमारे केस में दूसरी बार आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा value of i colon 1
लूप तब तक निष्पादित होगा जब तक कंडिशन false है अर्थात जब वेरिएबल i 5 हो जाता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ औऱ किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें
perl hyphen c dowhileloop dot pl
और एंटर दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
dowhilelooppl syntax ok
जैसे कि यहाँ कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर्स नहीं है हम अब पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे
टाइप करें perl dowhileloop dot pl
और enter दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अब while और dowhile लूप के बीच वास्तविक अंतर देखते हैं
टर्मिनल खोलें टाइप करें
gedit loop dot pl space ampersand
और एंटर दबाएँ
यह gedit में loop dot pl फाइल खोलेगा
अब दिखाए गये कोड के भाग को टाइप करें
हमने एक वेरिएबल count घोषित किया है और यह जीरो पर इनीशिलाइज किया
while लूप कंडिशन में हम चेक कर रहे हैं यदि वेरिएबल count शून्य से बडा है
कंडिशन true नहीं है अतः while लूप कोड एक बार भी निष्पादित नहीं होगा
dowhile लूप में हम पहले कोड को निष्पादित कर रहे हैं और फिर कंडिशन चेक कर रहे हैं
तो कोड कम से कम एक बार निष्पादित होगा
फिर कंडिशन चाहे वेरिएबल count जीरो से बडा है यह चेक हो गया है
कंडिशन true नहीं है तो लूप एग्जिट होगा
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ और किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर्स को चेक करने के लिए निम्न को टाइप करें
perl hyphen c loop dot pl
और enter दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
loop dot pl syntax ok
जैसे कि यहाँ कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर्स नहीं है तो perl loop dot pl
को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करते हैं
और enter दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
i am in dowhile loop
यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई आउटपुट मैसेज i am in while loop प्रदर्शित नहीं हो रहा है
यह मैसेज था कि हमने while लूप के अंदर क्या प्रिंट किया था
इस का अर्थ है कि
dowhile लूप कम से कम कंडिशन का मूल्यांकन करके से पहले निष्पादित होता है
जबकि while लूप एक बार भी निष्पादित नहीं हुआ है जब कंडिशन false निर्दिष्ट होती है
मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा
while और dowhile लूप्स के बारे में बस इतना ही
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
सेम्पल प्रोग्राम्स का उपयोग करके
पर्ल में while लूप और dowhile लूप
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
प्रिंट करें hello perl
वेरिएबल की गणना 10 होने तक
while औऱ dowhile लूप्स का उपयोग करके
निम्न link पर उपलब्ध video देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करने और देख सकते हैं
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद